इस इमेज में मेरेको एक बस दिखाय दे रही है एंड पीले कलर की बस है एक व्यक्ति--

इस इमेज में एक क्रेटा खड़ी --

एंड साइट में कुछ वृक्ष लगे हुए हैं।

एंड फ़िल्टर रखे है यहाँ मे अंदर मे दो कुर्सी खड़ी बगल में लगी है ब्लेक कलर --

कुछ हरियाली दिखाई दे रही है।